उसके हाथ में हेलमेट है छत पर बहुत सी लाइटें जग रही है नीचे सफेद रंग की टाइले हैं।

नीला आसमान है जमीन पर पेड़ों के पत्ते गिरे हुए हैं।

एक तरफ दीवार में एक कार्टून की पेंटिंग बनाई गई है।

कुछ पीले रंग के बक्से नीचे जमीन पर पड़े हुए हैं एक तरफ एक ट्रक है।

इसके ऊपर हिंदी में कुछ लिखा हुआ है दुकान के बाहर नीले रंग की सफेदी की गई है।

इस तस्वीर में पीले रंग के फूल है कुछ बड़े फूल है कुछ छोटे फूल है।